और सामने एक आदमी ने अपने--

ये एक ब्लैक कलर एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है और यहां पर एक तरफ से है और बाकी के--

ये एक स्कूल का रोड है जो गेट अंदर जाते ही हमें सामने नज़र आता है और ये रोड को आगे जाकर फिर सामने एक स्कूल है और साइड में एक --

ज यहाँ पर आके रश बनाकर ये ये चर्च के सामने खड़े हुए है कुछ औरते है कुछ मर्द है ।

ये एक फैक्ट्री है यहाँ पर स्टील के चीज़े बनाई जाती है यहाँ पर सेल के बर्तन वगैरह भी बनाए जाते है ।

ये एक किराना स्टोर है यहाँ पर खाने पीने की बहुत ज्यादा रशिया पापड़ लेज बिस्किट वगेरा हर चीज रखी गई है यहाँ पर इसने दूकान पर बेग भी रखे है बोतल वगेरा ड्रिंक --

घर मे घर के ऊपर लाइ रंगीन लाईटे भी लगे हुई हैं ।

ये एक कबाड़ी की दुकान है यहां पर टूट-फूटा सामान सारा लाकर --

ये पार्क में एक दरफ्त खड़ा हुआ है और इसके इसके बेकसाइड में सूरज सूरज है इसको व्यू बहुत ही खुबसूरत आ रहा है और दरफ्त के आस पास हरी --

राम एंड संस कि सटो अ कि दुकान हैं ।

पे बहुत जादा रिंग चैनस वगैरह और इसके साइड पर शीशे के बॉक्सों मे भी बहुत जादा ज्वेलरी है ।

इन यहाँ पर जो लाय गये और इसके उपर लाइटिंग लाइट भी बहुत बड़ी लाइट लगी है और इसके आस पास बहुत लोग है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा लोग है ।

वे अपने अपने ख़त ख़त लैटर वगेरा जो है वो यहाँ पर देते है और जिन लोगो को पहुचाना होते है वो इन यहाँ से उन लोगो तक पहुचाये जाते है ।

और घर के सामने दो मोटरसाइकिल खड़ी है और कार ही कार भी खड़ी है रिक्शे यहाँ पर सड़क पर खड़े है ।